बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं कुछ सी_सी कैमरा भी है और फैन भी लगे हुए हैं।

पेड़ रखे हुए हैं कुछ लटकाए हुए हैं जिसमें लाल रंग का रिल लीची है जिसमें पत्ता भी लगे हैं।

यह एक महावीर किराना दुकान--

और उसके साइड में एक रोड भी है।

बैग भी हुआ व्यक्ति रास्ते में रास्ते पर खड़े हुए हैं।

कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं जो लइकी के हैं।

साड़ी वाड़ी टंगे हुए हैं कुछ रखे हुए हैं कुछ नीचे

और यहां पे बैठने के लिए भी बनाया गया है।

बगल में पेड़ भी है।

दो बलिश्ते भी रखे हुए हैं।

बहुत साड़े पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें लाइट भी लगा हुआ है।